वो पानी की तरफ देख रहा है और--

जहां जिसमें एक लोग बैठे हुए हैं और एक जो है वो गाड़ी में गाड़ी ठीक कर रहा हैं।

ये एक बहोत ही अच्छा इमारत है।

ये एक सैलून दुकान है जहां लड़के लोग अपना बाल कटाने जाते है।

और बोर्ड के आस पास सारे पेड़ लगे हुए है पेड़ पे पीले पीले फूल है।

चुन्नी के साइड में साइड साइड में फ्लावर्स के --